ये बहुत सुन्दर स्कूल दिखाई दे रहा है और उसके बाहर बहुत ही--

पेड़ भी बहुत सुंदर लगा हुआ है आसमान तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है।